इस तस्वीर में एक चाय की दुकान दिख रही है दुकान के बाहर बोर्ड्स लगा है जिस--

दुकान के अंदर के तरफ एक व्यक्ति बैठ के फोन चलाते दिख रहे है।

साथ ही एक नौका दिख रही है और खुला आसमान दिख रहा है।

इसके प्रवेश द्वार पर महाराष्ट्र पर्यटन राजधानी औरंगाबाद मध्य आपले सहस्त्र स्वागत लिखा दिख रहा है।

और आस पास में डमी पर ब्लाउज टंगे हुए हैं लाल और सफेद अलग अलग रंग के।

आगे सड़क के अंत में एक रेलिंग और सीढ़ियां नजर आ रही--

इस तस्वीर में एक बहुत ही बड़ा डी_जे दिखाई दे रहा है डी_जे के ऊपर शर्मा ऑडियो का बोर्डस लगा है।

इस तस्वीर में एक बाजार दिखाई दे रहा है शाम का वक्त हो रहा है लाइट जल रही है।

और भीड़ लगी हुई है लोगों की फूलों को देखने और खरीदने के लिए।

महिलाओं के हाथ में सूप दिखाई दे रहा है जिसमें फल वह अन्य पूजा की सामग्री दिखाई दे रही है।

उसी के बगल में खाने पीने की एक छोटी दुकान दिखाई दे रही है जिसमें खाने पीने की सामग्री रखी है।

इस दुकान के बाहर बोर्ड लगा है जिस पे गौर ट्रेडर्स लिखा है।

दुकान के बाहर बोर्ड पर मोबाइल का चित्र साथ ही श्री कृपा मोबाइल कंप्यूटर्स एसेसरीज रिपेयरिंग चार्ज लिखा दिखाई दे रहा है हरे रंग के पत्ते दिखाई दे रहे है।

अरे और लाल कलर के गमले दिखाई दे रहे हैं बड़े पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं और कच्ची सड़क दिखाई दे रही है।

गाय सफेद और काले रंग की है हरे रंग के रस्सी से बंधी है गाय के सामने बिचाली रखा हुआ है गाय के खाने के लिए।

कांच कि खिड़कियां दिखाई दे रही है उसके अंदर रखा सामान दिखाई दे रहा है।

इस कमरे के जो जमीन है वो लाल और नीले रंग का कारपेट बिछा है साथ ही कुछ कुछ सामान भी रखा हुआ है सभी लोग ध्यान के अवस्था में--

इस तस्वीर में एक केक की दुकान दिख रही है ब्लू स्टार लिखा हुआ एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।

कांच के टेबल पर दो नीले रंग का केक रखा है एक गुलाबी रंग का केक रखा है साथ ही पीछे कांच की अलमारी पर बच्चों के जन्मदिन की टोपी और सजाने का सामान रखा हुआ है।

पीछे भव्य नकाशी किया हुआ पत्थरों का एक सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है।

एक सफेद रंग का बोरा दिख रहा है बाई ओर एक धातु की अलमारी नजर आ रही है।

पेप्सी स्प्राइट कोको कोला थम्सअप साथ ही कांच की छोटी अलमारियों में सामान रखा हुआ है एक व्यक्ति काउंटर पर खड़ा दिख रहा है।

सामने की तरफ काले रंग का ग्रिल गेट दिखाई दे रहा है।